यह चित्र एक कार्यालय का ही है जहा पे काफी सारे बच्चे बैठे हुए है।

जैसा एक रस्सी से बने हुए खूबसूरत बतखों का है एक उनके ऊपर फूल लगे हुए है। कार्पेट बिछा --

स्कूल ड्रेस में बिल्डिंगे दिख रही हैं पेड़ दिख रहे हैं आसमान दिख रही हैं दिख रहा --